है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।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

ये मुझे एक मनन फार्मा दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक मेडिकल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे दो पुरुष दिखाई दे रहे--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

इस तस्वीर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।